बिच मे बहुत सारा कुंडिया रखी है।

यहाँ पर एक त बगीचा है। इस बगीचेके अंदर बहोत सारे पेड़ पौधे है। उपर की तरफ आसमान है जमीन है।

यहाँ पर एक पांडेला है जिसके अंदर बहुत सारी पॉकेट दिख रही है सामने एक टेबल है।

उसके पीछे एक सूखा हुआ पेड़ है पीछे एक घर भी दिख रहा है।

नीचे दो सिडिया है उसपर थोडासा कचरा पड़ा है। उपर आसमान है। वह सफ़ेद कलर का दिख रहा है और बहुत सारी तारे दिख रही है।

आजूबाजुमे बहुत सारे पथर भी पड़े है। आजूबाजुमे बहुत सारी घास है। उपर आसमान है वह नीला है।

यहा पर एक बिल्डिंग है। कुछ बिल्डिंग के सामने--